में कई सारे फुल हैं पौधे हैं कई सारे पेड़ भी हैं।

बादल के फोटो अच्छे से नई आ पाई है।

स्टैंड का लग रहा है क्योंकि कई सारे बसेस खड़े दिखाई दे रहे हैं।

कई तरह की मिठाइयां हैं लड्डू है। कुछ तरह के नमकीन भी हैं।

यहां पे कई सारी गाड़ियां खड़ी हुई है।

पर पिक्चर से ये पर्किंग लॉट ही लग रहा है।

राप्तीनगर नगर डिपो लिखा हुआ है तो ये बस राप्तीनगर साइड चलती होगी।

यह आप देख पा रहें हैं कि यह एक स्टेशनरी शॉप है। कई सारे बुक --

ये देख पा रहे हैं ये पार्क का इमेज है। नाम इसका महंत पार्क है।

बैनर से पता चल रहा है की इंडियन आयल का पट्रोल पंप है ये।

ये वहीं पे बेच भी रहे होंगे।